पीछे की तरफ कुछ बच्चे बैठे हुए--

जिसके पीछे काफी लोग तेजी से भाग रहे हैं और इसमें काफी लोग अंदर बैठे भी हुए हैं।

ये बच्चे एक बैल्लू के पीछे काफी तेजी से भाग रहे--

मुझे इस तस्वीर में एक रोड रोलर दिखाई दे रहा है जिसमें की काफी मिट्टी--

और इसके साथ में एक ट्रक और खड़ा हुआ है।

और आगे भी बहोत अच्छा सुन्दर नजारा दिख रहा है।

ये डॉक्टर्स एक एक करके सभी मरीजों का इलाज--

उगाया गया है जिसमें कि लोग बाग बैठने का--

और इस पेट्रोल पंप पर बहोत ज्यादा भीड़ भी नजर आ रही है।

मुझे इस तस्वीर में एक कार दिखाई दे र--

जिसके साथ से एक व्यक्ति गुजर रा--

और ये झूले काफी बड़े अच्छे नजर--

और ये जोश वगैरह की स्टॉल बहुत ही सुंदर सजाई गई।

और बाहर की तरफ एक बड़ा गेट भी लगाया--

और इसमें कफी हद तक अच्छे ए_सी भी लगाए गए हैं।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

मंदिर काफी साफ सुथरा लग रहा है और पीछे की तरफ दो गेट भी लगाए गए हैं।

और नीचे की तरफ एक पार्क भी हरा भरा बना हुआ है ये पार्क बहोत ही सुंदर लग रहा है।

बड़ी ही ज्यादा क्वांटिटी में यहां पर लाई गई हैं।